इसमें लाल कलर का एक रॉस भी दिखाई दे रहा है।

आपको यहां भी दिखाई दे रहा है।

हमको यहां पे पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में हमको दे टिटू और टेबल भी दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में हमको एक रूम नजर आ रहा है।

कोई यहां मे बहुत ज्यादा गोभी भी दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में आपको छोटा छोटा जंगल भी दिखाई दे रहा है।

ए पिक्चर में आपको एक स्टार भी दिखाई दे रहा है।

हमको यहां में स्टेडियम भी दिखाई दे रहा है।

हमको ब्राउन कलर का एक अलमीरा भी नजर आ रहा है।

आपको यहां में बहुत ज्यादा खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

आपको यहां पे बादल भी दिखाई दे रहा है।

कोई आगे बहुत ज्यादा घर नजर आ रहा है।

राइट में बहोत बड़ा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

दूर में हमको काला कलर का दो सिंटेक्स भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे आपको पानी भी दिखाई दे रहा है।

घर के आगे एक वाइट कलर का गाड़ी को पार्किंग करके भी दिखाई दे रहा है।

हमको ये पिक्चर में बादल भी नजर आ रहा है।

और यहां पे दो घर दिखाई दे रहा है।

कोई यहां पे एक औरत खड़ा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे हमको टेबल भी दिखाई दे रहा है।

को यहां पे एक शॉप दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में आपको बहोत ज्यादा आदमी लोग दिखाई दे रहा है।

हमको रेड कलर का दो चेयर भी दिखाई दे रहा है।